ब्लू कलर की लाइटें लगी हुई हैं और फूलों से डेकोरेशन किया हुआ है यहां पर।

और एक बोर्ड में किम स्टार लगा हुआ है और बहोत ही सारी बाईके लगी हुई--

पुराना कूड़ा भी रखा हुआ है उसके बगल में रोड पे।

। पहाड़े भी है मिट्टी भी है हर एक चीज यहां पर ।

ये दृश्य एक मैदान की है जहां बहुत बड़े मैदान है घास भी हरी हरी घास--

तथा यहां पर फैक्ट्री का मशीन का कलर ऑरेंज है और ब्लू है और--

बहोत ही सारे पेड़ पौधे हैं और हरे भरे सन्नाटे हैं।

और सनसेट का लाभ उठा रहे हैं यहां पर--